एक स्टेट या एक ड्रिस्टीक दूसरे ड्रिस्टीक या स्टेट जाने के लिए होती है जो कि बोहोत सारे सामान को ले जाती है। ऐसी कोई --